वाइट ड्रेस में हैं संस्कृति कुछ मतलब बस्तर में वो होता हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ पे ये मतलब चलता है।

आयकर विभाग का ऑफिस है मतलब धीरज सिंह चौहान का कैबिन है।

आंध्रा समाज का मतलब लोज हैं जहाँ --

एक आंटी जी झाडू लगती हुई और भईया जी आ अ डेकोरेशन करते हुए।

अजय ट्रेनिंग कंपनी हैं यहाँ मसाला इग्ल मसाला उगल मतलब पुरे मसाले --

यह ये एक चर्च हैं हमारे ईशु मसीह जी का--

बहुत बड़ा काफ़ी यहाँ काफ़ी हद से ज़्यादा मतलब सामाने मिलती हैं यहाँ पे--

बहुत ही मतलब सुंन्दर आकर्षण गार्डन सामने पेड़ -पौधे और पौधे का --